एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे न्यू लक्ष्मी लिखा हुआ है और साथ ही एक गोल टंकी बनी हुई है और सामने खिड़कियां लगी हुई हैं और कुछ स्कैनर लगे हुए --

यह एक सिलीमिंग सेंटर है इसके साइट में एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे श्रीमती कांति मौर्य लिखा हुआ है।

यह एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है। जिसका कलर पीला और ग्रीन कलर का है और इसके आस पास दीवारें नजर --

यह एक खंडहर की तरह बाटी दिखाई दे रही है। बिल्डिंग इसके पास में हरे - हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तार खिचे हुए हैं।

यह एक बहोत बड़ी मस्जिद है जोकि लाइटों से सजाई हुई है। यहाँ पे बहोत सी सरकटे लगी हुई हैं।

यहाँ पे खम्बे की तरह पाइप लगे हुये है जिसमे गोल बलप को डाला गया है और बहुत से लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक हॉल है जिसमें मार्कर बोर्ड की जगह पे एक बोर्ड टाइप का लगा हुआ है जिस पे घोड़े छपे हुए हैं। ऊपर पंखा लगा हुआ है और लाइटे लगी हुई हैं।

यह एक मैदान है। जिसके साईट में एक रोड बना हुआ है जो को ईट की आकर जैसा बना हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग है और इस मैदान में बहोत से पेड़ पौधे लगे हुये हैं जिनको सफ़ेद और लाल कलर से पेंट किया गया है साथ ही एक बहोत बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है।